यहां हम देख सकते है कि यह एक गंगा नदी है।

सामने खिड़की हम यहां देख सकते हैं।

और ऊपर छोटी छोटी लाइटें लगी हैं जो काफी सारी हैं।

और भी बहोत सारी चीजें रखी हुई दिख रही है।

यहां हम देख सकते है की यहां पर उगता हुआ सूरज दिख रहा है बड़े बड़े पहाड़ हम यहां देख सकते--

और यहां पर एक घर हमें नजर आ रहा है।

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

पीछे की और कुछ टूटा हुआ सामान पड़ा हुआ है।

चल एडवांस बाइक केयर सेंटर यहां लिखा हुआ है।

एक दो आदमी आपस में बात करते हुए यहां दिख रहे हैं।

यहाँ पर नीले हरे रंग का डस्टबिन पड़ा हुआ हैं।

यहां पर आदमी बनियान में बैठे हुए हैं।

जहां पर पीले और काले रंग की मशीने पड़ी हुई हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि एक लड़का जिसने माथे पर तिलक तथा गले में नेकबैंड पहेना हुआ है।

काले रंग की शर्ट उसने पेहनी हुई है।

और एक सड़क हम देख सकते हैं जो एक पूल की तरह बनी हुई हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि स्टील की बड़ी प्लेट में काफी सारी जलेबियां पड़ी हुई हैं।

नीचे फ्लोर पर हरा मैट बिछा हुआ है एक लड़का हमें यहां पर जिम करते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर खिड़कियां हम देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी हैं।

जिस पर लिखा हुआ है वातानुकूलित--